जहां पे एक रोड की किनारे बिल्डिंग दिखाई दे रही है एंड इसके बगल में एक लाइट की खमवे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे छतरी रखा हुआ है यहाँ पर प्रॉपर लाइटिग की सुविधा है।

एण्ड इसके बारे में बहुत सारे तार लगे हुए हैं यहां पे पेड़ --

इस तस्वीर में एक दृश्य को दिखाया जा रहा है जहां पर एक विशाल बिल्डिंग र- दिखाई दे रहा है यह बिल्डिंग व्हाइट एंड कत्थई कलर से इसे पेंट किया गया है।

इस तस्वीर में एक आंगनबाड़ी दिखाई दे रहा है। जिसके सामने एक इको खड़ा हुआ है चलती हुई नजर आ रहा है। इसके पास में ही एक और मकान दिखाई दे रहा है।